यहाँ पे एक व्यक्ति भी है जो कि सिस्टम पे काम कर रहे है। और यहाँ पे चार्जर भी लगे हुए है बोर्ड में--

उनके आगे भी दो व्यक्ति चेयर पे बैठे हुए हैं फैन लगे हुए हैं नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

बाहर का दृश्य है जहां पे वर्कर्स लोग लगे हुए है जे_सी_बी है।

नीचे में बहुत सारा कचड़ा भी है साइड में रेड कलर का कुछ है।

यह एक मूर्ति का दृश्य है यहां पे पूरा मूर्ति डेकोरेट किया गया है।

यह दो व्यक्ति के दृश्य हैं जोकि काम कर रहे है।

यह एक बच्ची का दृश्य है जो पार्क मे खड़ी है लोहे का ग्रिल पकड़ के और यहां पे--

और नीचे मे गोल सा राउंड बना हुआ है पेड़ है शूज़ पहन के हैं।

यह एक दुकान का शॉप है जहां पे काफी सारी बुक रखी हैं।

और सीढ़ी भी लगे हुए है रोड पे बहुत सारे बाइक है होंडा है।

यह एक व्यक्ति का दृश्य है जो कि पिंक टी शर्ट में है।

यह एक मस्जिद का दृश्य है यहां पे एक बच्ची खड़ी है बाहर में एक पेड़ भी लगा हुआ है।

और मक्का का चित्र भी बना हुआ है।